आदमी ने अपने इस पे चेहरे पे सफेद रंग का मास्क लगाया हुआ है।

ट्रक के ऊ पीछे तरफ आ सामने तरफ एक नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है।

और इसके बगल में एक लड़का खड़ा है जिसने पीले रंग की शर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ है।